अभी जो आप देख रहे हैं यह एक टेंट या जिसे तम्बू बोला जाता है वह है।

अभी जो आप देख रहे हैं यह एक डेरी है जो जिसका नाम करीमनगर डेरी डिपार्टमेंट डेरी पार्लर है।

यहाँ पर यहां चौबीस घंटे खुला रहता है यहाँ पर दोनों पेट्रोल और डीजल मिलता है।

यह एक पी जे बेकर्स एंड कैफे है।

इस तस्वीर में आप जो देख रहे हैं यह ऋषिराम शिक्षण संस्थान यानी कि एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है।

क्रिकेट एक बहुत ही अच्छा खेल होता है क्योंकि इसमें दौड़ भाग के साथ-साथ कई अन्य व्यायाम भी होते हैं।

भी जो तस्वीर मे आप देख रहे हैं यह उत्तरकाशी जिला है यह जगह जोशियाड़ा की है।

यहाँ जो नदी के सामने जगह दिख रही है यह एक पार्किंग एरिया है जहाँ पर बहुत सारी बसें --

और उनका शरीर एकदम तंदुरुस्त रहे --

जिससे वह अपनी बीमारियों से मुक्त हो सके और एक साधा एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत के सके।